वास्तु शाही में एक नीले रंग का हाथ दिख रहा है।

प्रस्तुत छवि में एक बड़ा सा इमारत दिखाया गया है।

इमारत के सामने एक कचड़ा उठाने वाली गाड़ी भी खड़ी है।

मकान का रंग पीला है एवं उसमें तीन खिड़कियां नजर आ रही हैं।

सभी लड़कियों ने एकसा ड्रेस पहना हुआ है।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटे से किराना दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

होटल की दीवारों को काले रंग से रंगा गया है एवं बहुत सारी लाइटें भी लगाई गई हैं।

एक व्यक्ति अपने लैपटॉप पर कुछ काम भी कर रहा है।

प्रस्तुत छवि में एक छोटे से दुकान को दिखाया गया है।

दिखाई गए दृश्य में किसी कमरे का दिखाया गया है।

कमरे में बहोत सारे उपकरण मौजूद है एवं एक नीली रंग का कुर्सी भी मौजूद है।

एक भूरे रंग का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

दुकानों का रंग सफेद रंग से रंगा गया है।

दिखाए गए दृश्य में बहोत सारी रेत दिख रहे हैं।

उसने काले रंग का कपड़ा और नीले रंग का पेंट पहना है और हाथों में ग्लव्स भी पहना हुआ है।

मंडी में बहुत सारी सब्जियां है जैसे आलू पत्ता गोभी बंद गोभी टमाटर प्याज लहसन बैगन इत्यादि।

दिखाए गए दृश्य मे एक बड़ा सा ईमारत दिखाया गया है जो कि चार तल्ला है।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

दुकान का नाम मा सीताराम नंदलाल बर्तन दुकान है।

किताबों को एक के ऊपर एक रखा गया है।

बिजली उत्पादन क्षेत्र में बहुत सारी बिजली के तारे एवं बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं।

तीन बच्चे फौजी के कपड़े पहने हुए हैं एवं एक लड़की परी बनी हुई है।

उसके तीन ऩंबर भी दिये गए है।

दिखाए गए दृश्य में एक खुला सा मैदान दिख रहा है।

गलियारे में बहोत से पुराने अलमीरा है।

सारे टॉर्च नए एवं डब्बे में बंद है।

में बहोत सी अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के बुक दिख रहे हैं।

सामने बहुत सारी छोटी बड़ी एशियन पेंट अपेक्स डॉट प्रूफ के बाल्टी दिख रहे हैं।